पत्थर जैसा कुछ बना हुआ है जो झोपड़ी जैसा दिख रहा है इसका कलर मुझे ग्रीन और ऑरेंज दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक मॅट वाला ग्रीन कलर का बना हुआ है इसके पीछे मुझे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और ये बिलकुल सिक्यूरिटी के साथ एक टेबल पे रखी हुई है जिसके सामने साइड मे बाउंड्री की गई है।

फोटो मे मुझे एक तलाब दिखाई दे रहा है तलाब पानी के भरा हुआ है और तलाब किनोर पे मुझे कुछ प्लांट्स लगे हुए दिखाई दे रहे है यहा पर आसमान मुझे बहुत ही खुला और साफसुथरा दिखाई दे रहा है यहा पर मुझे --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

यह तस्वीर मुझे एक मंदिर की दिखाई दे रही है जिसमे मुझे एक त्रसूल पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यह ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है कुछ हार भी पहना हुआ है।

मुझे कपडो की शॉप दिखाई दे रही है इसमे अलग अलग तरह के कपड़े रखे हुए है और यहा पर दो रेक रखी हुई है जोकि ब्लॅक कलर की है।